तथा अगल बगल दीवारों पे आप देख सकते हैं शीशे कई सामान रखे हुए हैंअलमारियां बना रखी है ।

रंग बिरंगी नजर आ रही है उसके ऊपर की ओर देख सकते है झंडा भी लगा हुआ है।

यहाँ सड़क दिखाई दे रही है बीचो बीच तथा किनारे के साइड बाइक खड़ी है कुछ सब्जियां दिखाई दे रही है सब्जियों मे टमाटर दिखाई दे रहा है ।

अलमारी टाइप के मेज बना रखे हैं जिन पे की हैंगर लगे हुए हैं | जिनके कपड़े लटके हुए है ऊपर भी कपड़े लटका रखे हैं ।

सफ़ेद कलर का डिज़ाइन बन रखा है। अंदर की ओर एक खोल बन रखी है और आसमान भी नजर आ रहा है।

मंदिर के आगे देख सकते हैं दी जीना है जीने के नीचे अगल-बगल पे एक रूम दिखाई दे रहें हैं।